आसमान दिखाई दे रहा हैं आसमान का कलर नीला सा दिखाई दे रहा हैं और काला सा नदी का पानी हल्का नीला दिखाई दे रहा हैं।

साइड में पहाड़ी दिखाई दे रही है टोल टैक्स दिखाई दे रहा है पहाड़ी हरी-भरी दिखाई दे रही है आ --

बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है नदी में बहोत सारी हलचल दिखाई दे रही है हलचल का कलर जो पानी का कलर बिलकुल नीला दिखाई दे रहा है।

पानी का कलर काला-काला दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान है आसमान का कलर सफेद और काला दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हैं जिनकी पत्तियाँ हरी-हरी दिखाई पड़ रही है।